चार लड़कियां डान्स करती हुईं दिखाई दे रही है और यहाँ पर इन्होने --

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है सामने एक बहोत बड़ा मैदान जैसा --

अच्छा लग रहा है बहोत दूर से लग रहा है की कोई कॉलेज है यहाँ पर बहोत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा --

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है देखने से लग रहा ये कोई पेमेंट बँक --

और बहोत बड़ा जगह है जहाँ पर ये --

डायनासोर बना हुआ है बहोत बड़ा लाइट लगा हुआ है और बहोत सारे यहाँ पर --